यहाँ पर अ ये कुछ फूलों के साथ डेकोरेशन किया गया है। परदे लगे हुए हैं जोकि रेड कलर के हैं येलो ब्लू कलर के हैं और नीचे की तरफ भी हैं।

पलंग हैं और नीचे की तरफ फर्श नज़र आ रहा है सीलिंग नज़र आ रही है। रेड एण्ड ब्लू कलर का कुछ लिखा ह ---